बहुत सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

जीसके आस पास पेड़ ही पेड़ है।

और यहां लोहे की रेलिंग भी लगी हुई हैं।

हरे पौधें और पास में एक पेड़ लगा हुआ है।

और पास में पेड़ भी लगा हुआ है।

और एक दूसरे की मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

खुला आसमान है पीछे आगे एक पार्क है उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है उसके साइड में एक --